बच्चे बैठे हुए हैं एक साइड गर्ल्स बैठी है दूसरे साइड बॉयज बैठे हैं उसे स्कूल में जालियां बनी हुई है बहुत सारी--

एक स्कूल कॉरिडोर है जिसमे दो टीचर्स हैं जो कि लेडिज हैं ओर उन्होंने ब्लू कलर कि सारी--